यहां पे एक बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग का कलर सफेद है बिल्डिंग के सामने एक बहुत ही बड़ा गार्डन है गार्डन में बहुत सारे पेड़ लगे हुए है पौधे लगे हुए है यहां पे लाल कलर के पत्ती दिख रही है और साइड में बैठने के लिए जगह कुर्सी लगी हुई है जो बैठने के लिए है।

बैंक बैंक का आधा शटर बंद है और गेट लगा हुआ है गेट आधा खुला हुआ है साइड साइड में दो खिड़की बने हुए है खिड़की के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है पीले कलर का टी-शर्ट पहना है नीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है एक बाइक खड़ी हुई नजर आ रही --

यहाँ पे झोले में फूल भर के रखे गए हैं यहाँ पे पत्रा लगा हुआ है उसके ऊपर लाइट लगी हुई है यहाँ पे सेल्स बने हुए हैं उसके अंदर भी फूल सज रखे गए हैं यहाँ पे वजन करने वाला एक लाल कलर एक लाल कलर का टेबल रखा गया है वजन करने वाला --

लाल और पीले कलर के बैलून से सजाया गया है और नीचे बोहोत सारे गिफ्टस के डब्बे रखे हुए हैं कलरफुल डब्बे रखे हुए हैं ऊपर कैंडल स कैंडल से सजाया गया है माल के अंदर पूरी लाइटिंग की है जो बोहोत ही प्यारी लग रही है यहां पर लोग कपड़े लेने आते हैं शॉपिंग करने आ --

यहां पे एक कार्यालय है कार्यालय में बहुत सारे दरवाजे लगे हुए हैं और एक ऊपर भी कार्यालय बन रहा है जिसकी गैलरी बनी हुई है कार्यालय के बाहर कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं और --

यहाँ पे बच्चों के झूलें है बच्चे सब झूला झूल रहे है यहाँ पे बहोत सारे लोग घूमने के लिए आए है बहोत सारी यहाँ पे कुर्सी लगी हुई हैं बहोत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है यहाँ पे ग्रुप में ग्रुप बना कर सब आपस में बात करते हुए नजर कुछ लोग जमीन प --

एक बहुत ही बड़ी साड़ी की दुकान है यहां पर थैली में करके बहुत सारी साड़ी एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं कुछ सेल्फ में भी डाले गए हैं बॉक्स के अंदर साड़ी पैक है ऊपर फैन लगा हुआ है।